बीच में से एक रास्ता निकल रहा है और इधर उधर दोनों साइड में बहोत गहरे गहरे कुछ उगे हुए हैं।

और आगे से एक सड़क निकल रही है सड़क के ऊपर बहोत तरह के वाहन खड़े है।

यह सामने एक लोहे के लगे वहां एक--